एक कटोरा है चार चम्मच है।

और चार प्लेट में प्याज है।

आम का पौधा दिख रहा है चारो तरफ से बगान ही बगान है।

एक लड़का चल रहा है।

मुँह तरह दिख रहा है।

सरिया का बिल्डिंग बना रहा है शायद।

और जो अस्त पास्ट दिखाई दे रहा है।

एक आदमी बाइक में बैठा हुआ है एक --

और इसमें मोबाइल नम्बर लिखा हुआ है नाइन --